यहां पे अंधेरा है आसमान काले रंग का दिखाई दे रहा है।

यहां पे पोस्टर लगा है यहां पर शीशे के दरवाजे हैं।

आस पास नदी है यहां पर कुछ लोग पहाड़ पे दिखाई दे रहे हैं।

यहां पर बहुत से गमले रखे हुए हैं जिनमें बहुत से फूल लगे हुए हैं।

इसने काले रंग की शर्ट पहनी है इसके हाथ में एक बॉटल है।

यहां पे कुछ झालर लगी हुई है जो रंग बिरंगी है।

यहां पर बहुत बड़ी मूर्तियां बनी हुई हैं जो काली और सफेद रंग की है।